एक आदमी है दो-तीन गाड़ी है।

नीचे जमीन है ऊपर आसमान है।

टेबल है गेट है।

एक पार्क है हरे भरे घास हैं।

ऊपर लाइट है दो वेंटिलेटर है नीचे जमीन है बड़ा सा एक घर है।

इस तस्वीर में एक घर है घर के नीचे--

गेट पर फूल के माला चढ़ाए हुए हैं।

एक गेट है अगल-बगल घर है नीचे जमीन है।

देवाल पर एक टी_वी है नीचे एक बोर्ड है।

अगल-बगल बेड है सामने गेट है जो खुला है ऊपर बॉल है।

अगल-बगल गाड़ी है नीचे जमीन है दो गाड़ी चार चक्के हैं इंडियन बैंक है।

अगल-बगल पेड़-पौधे हैं ऊपर असमान है।

नीचे जमीन है ऊपर आसमान है।

सामने एक पार्क है एक बाइक है ऊपर जमीन है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में ढेर सारे कमरे हैं दो आदमी हैं एक रोड है।

एक फ्रेज है उस पर सामान रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में बड़ा सा टेबल है।

सामने शीशा है जो ब्लू कलर का है।

सामने एक गेट है अगल-बगल पेड़ पौधे हैं।

ऊपर आसमान है बड़ा सा एक जमीन है नीचे धरती है।

तीन चार पांच घर हैं एक बड़ा सा है।

बगैचा है ऊपर आसमान है।

अगल-बगल लाइट है सामने एक गेट है।

दो-तीन लड़के बैठे हुए हैं नीचे टाइस है।

टेबल कुर्सी है ब्रेंच भी है बेंच पर ढेर सारे कॉपी किताब है इसमें बच्चे लिख रहे हैं सामने।

ऊपर में दो मैक हैं नीचे ढेर सामान है।

ऊपर आसमान है नीचे धरती है।

खिड़की में पर्दा लगा हुआ है आगल बगल।

इस तस्वीर में ढेर सानी पानी है एक नाव है वाइट कलर का।

अगर बगल पेड़ पौधे हैं एक हरा झंडा है ऊपर समान है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर में चार खिड़कियाँ हैं।

तीन चार कुर्सियां हैं एक बड़ा लाल टेबल है।

इस तस्वीर में एक घर है घर में।

तीन चार गमले हैंजिसमें फूल हैदो तीन क है।

सेल बुक सेल लिखा हुआ है एक आदमी है।

फिर पौधे हैं ऊपर आसमान है नीचे जमीन है।

इस तस्वीर में एक घर है जिस घर का कलर वाइट है।

पे होते हैंदो तीन कमले में लगे हुए हैंसामने एक रोड है।

इस घर में दो लाइट है एक झूमर है।

सोफा है एक ब्राउन सोफा है तीन चार कमले में।

इसमें एक छिपा दिख रहा है।

दो दिन लाइट है घर का कलर पीला है।

इस तस्वीर में घर हैघर में।

ट्व पेट्रोल पंप हैअगल बगल ।

है एक आदमी हैजो जिसमें गेट खुला हुआ है।

में पर्दा लगा हुआ हैलाइट है।

वहा टेबल हैटेबल पर।

तीन चार लड़कियां हैं एक झंडा है पीछे पीछे सजाया गया है जो ब्लू कपड़ा लगा हुआ है नीचे हरा मैट बिछाया।

इस तस्वीर में एक स्कूल दिख रहा है स्कूल के बगल अगर खिड़की है।

दीवाल में एक ऐसी है नीचे चार पांच बेंच है।

बगल में पर्दा है एक खिड़की है।

अगल-बगल पेड़-पौधे हैं ऊपर आसमान है।

बगल घर में नीचे घास जमी हुई है।

एक तस्वीर है इस तस्वीर में ढेर सारे बच्चे हैं।